यह एक मंदिर है। मंदिर के अंदर आस-पास बहुत सारे पेड़ --

बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। और एक पंडित भी खड़ा हुआ है। और भगवान के आगे कुछ दीपक जल रहे हैं। एवं अगरबत्तियां भी जल रही है।